यहां पर देखिएगा इस इमेज में एक ए_टी_एम बैंक दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है और पौधों में बहुत ही --

यहां पर अंदर एक लड़का बैठा हुआ है और सामने कैलकुलेटर भी रखा हुआ --

पैदल चलते हुए भी नजर आ रहे हैं।

बंगला दिखाई दे रहा है और नीचे--

दिखाई दे रहा है और ऊपर नीला-नीला आसमान --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक रोड दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर बहुत ही खूबसूरत सा--

स्टेज बना हुआ है जिस पर कुछ बच्चे डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत माता का झंडा भी --